ये भी एक बुक का दुकान है दुकान का नाम है विघ्नन बुक सेंटर स्टेशनरी

उसके लिए एक स्टेज भी है और एक गणेश जी का पिक्चर भी दिख रहा है और बहुत सारा चेयर दिख रहा है।

बैलून का कलर है पार्पल और येलो --

बहुत लोग खरीदारी करने आए हैं और दुकानदार मछली बेच रहा है।

उस एरोप्लेन के सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिख रहा है आदमी एक टी-शर्ट और जींस में है।

यह एक कैफे के अंदर का छवि है इसमें कुछ टेबल या चेयर दिख रहा है और टेबल मे--